यह एक शॉप है जिसके बाहर एक टेबल और चेयर रखी हुई है चेयर पे तीन व्यक्ति बैठे हैं टेबल पे दो प्लेटो में पिज़्ज़ा रखे हुए है तथा एक व्यक्ति पिज़्ज़ा खा रहा है।

यह एक स्कूल है जहाँ बहुत सारे बच्चे एक दीवार के कोने पर खड़े है जहाँ सामने टेबल रखी हुई है टबल के ऊपर बहुत सारे --

आसपास पेड़ पौधे घास उगी हुई हैं तथा एक पानी का टैंक लगा है जिससे पाइप ऊपर आ रहे हैं।

कार के नीचे रोड पर साइड में बहुत सारे ईटो के टुकड़े और पत्थर रखे हुए हैं ।

तथा इनके हाथ मै गलू व अगल बगल बोहत सारे पोलयथेन कागज काईची और अन्य समान हैं ।

मालाएँ पहनाई गई हैं। बाहर की तरफ एक व्यक्ति खड़ा है जो यहाँ साफ़ सफाई कर रहा है। आस पास रेलिंग बनी हुई --

यह एक क्लासरूम है जिसके अंदर बोहोत सारे बच्चे चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं तथा एक छोटी छोटी टेबल उनकी चेयर से जुडी हुई हैं जिन पर बुक्स रखी हुई हैं। बच्चों ने मास्क पहना हुआ हैं। सामने स्टेज पर एक व्यक्ति खड़ा है तथा दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।

स्टेज के ऊपर तीन लड़कियाँ डांस कर रही हैं जिन्होंने अलग अलग ड्रेस पहनी हुई हैं पीछे एक ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है लड़कियों ने अपने हाथों को मोड़ा हुआ है साइड मे एक बलून लगा है।